जैसा की मै देख पा रही हूं मुझे यहाँ पर पानी भरा हुआ दिखाई है यहाँ पर इमारत दिखाई दे रही है जो भूरे और पिले रंग की है यहाँ पर एक कार है जिसका रंग --

जो कि बहोत सुंदर दिख रही है यहाँ पर दीवार क्रीम है।

यहाँ पर बादल साफ और सफेद दिखाई देता है यहाँ पर तालाब का झरना दिखाई दे रहा है जिस --

एक पीले रंग की पर नीले रंग से ए. टी. एम लिखा हुआ है यहाँ पर जमीन का रंग ग्रे है यहाँ पर--

सफेद रंग की ड्रेस पहनी है दीवाल का रंग हरा है तथा यहाँ पर जालीनुमा बड़ी-बड़ी खिड़कियां लगी हैं।

जेसा की मैं देख पा रहा हूं मुझे यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसका रंग ऑरेंज है। इस पर सफेद रंग से मंडवा महल--

जैसा कि मैं पर देख पा रही हू मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है जो कि ईटो से बनी हुई है यहाँ पर एक टेंट लगा है जिसकी--

रॉट भूरी है तथा टेंट का रंग लाल और सफेद यहाँ पर दो आदमी खड़े हुए है।

बोहोत सारा सामान रखा है यहाँ पर एक अमिताभ बच्चन की एक फोटो लगी हैं।

यहाँ पर लाल रंग की खूब सारी किताबें रखी है यहाँ तथा पीली रस्सी बंधी है तयहाँ पर एक काले रंग की कुर्सी रखी हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर दिवार का रंग भूरा तथा ऊपर क्रीम कलर यहाँ पर जालिनुमा बड़ी-बड़ी खिड़किया--

जैसा की मै यहाँ देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई देती हैं जिसका रंग सफेद हैं यह सदर अस्पताल गोपालगंज हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक बैंक दिख रही है जिसका नाम बैंक ऑफ बड़ौदा है यहाँ पर एक बैनर लगा है जिसका रंग सफेद हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कई सारे लोग खड़े हुए है यहाँ पर --

लिखा भी है यहाँ पर इसकी लाइट काली है और सफेद भी इसके पीछे एक मशीन रखी है जिसका रंग लाल है।

यहाँ पर एक औरत है जिसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है। उसके चेहरे पर एक मार्क्स है। मार्क्स का रंग सफेद है। यहाँ पर दो बाइक खड़ी है।

उसके हाथ में फोन है फोन का रंग काला है एक सीट है सीट का रंग सफेद है आदमी ने काले रंग की बनियान--

पीले तथा गुलाबी रंग से लिखा है हैप्पीनिज फास्ट फूड केक और बेकरी --

काला बिल्डिंग है यहाँ पर कुछ साड़ियाँ लगी है जिनका रंग लाल हरा और गुलाबी है यहाँ पर एक आदमी भी खड़ा हैं।

सफेद तथा क्रीम कलर है यहाँ पर कुछ लाइट लगी है जिनका रंग सफेद है सफेद और साफ दिखाई दे रहा है।

जैसा की मै देख पा रही हु मुझे यहाँ पर एक घर दिख रहा है जिसका रंग सफेद है यहाँ पर जमीन का रंग भूरा है यहाँ पर एक--

यहाँ पर कपड़े सूट है यहाँ पर स्कर्ट भी लगी हैं जिसका रंग स्लेटी है।

यहाँ पर एक हरे कलर का पेड़ भी है यहाँ पर एक टीन का भी सेड है जिसका रंग सफेद है।